में एक पेड़ लगा हुआ है जिसमें एस.बी.आई का बैंक भी है। यहाँ से एक आंटी गुजर रही हैं उनके पीछे एक बाइक वाला आ रहा है।

और यहाँ पे सब कोई जो है राइडिंग कर रहे हैं वाकिंग कर रहे हैं जो दिखने में बहोत अच्छा है बहोत सुन्दर है आसमान भी बहोत अच्छा आसमान में बहुत सारे सोसाइटी के लोग का जो ये बहोत बड़ा ग्राउंड लगता है जहाँ पे यहाँ पे बहोत सारे क्रिकेट भी खेली जा --

जो देखने में बहुत अच्छे बहुत सुंदर है और ये ऊपर मे लगता है यह चर्च है चर्च जो की बहुत सुंदर है। यहां पर रेड कलर के वर्क किए हुआ है ऊपर से ब्रेक पे जो दिख रहा है बहुत अच्छे लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है |

और यहाँ पे जो सब रंगोली बनाया है रंगोली जो है बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत अच्छा है और यहाँ पे बन रहा भी दिखने में बहुत अच्छा है जो वाइट कलर का बना है वो और ज्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत सारे --